सामने खाली जगह में भूरे- भूरे रंग का जमीन दिख रहा कुछ घास है जोकि पिले कलर की है कुछ घास हरे रंग की हैं बहुत सारे आदमी हैं।

कोई जगह है जहाँ पे मस्जिद टाइप मैं है इस मैं लोहे की खिड़कियां तथा जाली लोहे की लगी हुई उपर आसमानी आसमान दिख रहा है।

मंदिर में ऊपर झंडा लगा हुआ है पौधे हरे -भरे है जोकि बहुत सारे है सामने की खाली जगह हैं।

कोई जग खेल का मैदान है जहां नीचे हरी हरी घांस है कही कही पे घांस नहीं है सुख गया है बहोत सारी गाड़िया खड़ी है।

बीच मे जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी है जिसमे बीच मे लाल पट्टी है साइड साइड मे सफेद पट्टी सामने है

यह एक फलो की दुकान है यहाँ पर सेब की बहोत सारी दर्जने लगाई गई है पास में टाइल्स लगा है ऊपर टेंट लगा है स्टील की स्टील की दुकान में नरियल रखी हुई है।

नदी के अंदर भी पानी पे घाँस ऊगा है बहुत सारे साइड साइड मे पेड़ पौधे है उनकी परछाई पानियो मे दिख रही है आसमान की परछाई भी पानी मे दिख रही है उस हरी घाँस--

ग्राउंड मे बहुत सारे लोग बैठे है पेड़ पौधे है पेड़ पौधे के साइड साइड मे चबूतरे बना दिए है जो उग गए है जो की के चार कोण के है यहाँ नारियल के पेड़ --

पानी मे पत्तियां गिरी है पानी मे पेड़ पौधे की परछाई दिख रही है आसमान कि परछाई दिख रही है आसमान सफेद कलर की है जो --